बार्बी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रे कलर में वाइट कलर में।

और बॉक्सेस भी दिखाई दे रहे हैं अगरबत्ती के मैगी के।

यहां पर हमें एक लेडिस नजर आ रही है।

पुल भी दिखाई दे रहा है पार्क साइड यहां पर हरियाली दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें एक बड़ा-सा होटल दिखाई दे रहा है कांच से बना हुआ।

यहाँ पर हरियाली हरी-हरी घासे हमें नजर आ रही है।

यहां पर हमें एक र्चच दिखाई दे रहा है।